ये एक मार्केट की फोटो है जहां पे किराना दुकान है कोचिंग सेंटर है और हॉस्पिटल है।

दो व्यक्ति पेंटिंन कर रहे हैं एक व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ के कर रहा है और एक व्यक्ति छत पे खड़ा है।

घर से बाहर एक रोड जा रही है रोड पे एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है।

मछली कुछ व्हाइट कलर की हैं और कुछ ब्राउन कलर की हैं।

ये एक चाय और किराने की दुकान है जहां पे एक व्यक्ति--

ग्राउंड में बहोत सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं।

बाइक के बगल में एक बास का सीडी रखा हुआ है और एक कुछ दूरी पे ट्रांसफार्मर है।

ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं ग्राउंड के कुछ दूरी पे बिल्डिंग्स बनी हुई है।

ये एक किराने की दुकान है नीचे फर्श पे--

क्लास रूम में एक चेयर हैं और बहोत सारे टेबल लगे हुए हैं।

बेडरूम में एक चेयर और एक टेबल है।

ये एक पार्क का फोटो है जहां पे हाथी की मूर्ति बनी हुई है।

और हर कंप्यूटर के सामने बैठने के लिए एक चेयर रखा हुआ है।

और दिवाल पे एक घरी लगा हुआ है।

कुछ मशीने कपड़े से ढकी हुई है।

ये फोटो चनपटिया थाना पश्चिम चंपारण बेतिया की है।